लकड़ी का कुछ बना हुआ दिख रहा है बकरियों के कान दिख रहे है बकरियों की पूछ दिख रही है सिंघ दिख रही है।

नीचे टाइलस दिख रही है पीछे ब्राउन कलर की दीवार हल्की--

नीचे ब्लॉक लगे हुए है दो-चार ब्लॉक उस में से पिंक दिख रहा है सामने हरी घांस लगी हुई है पेड़ लगे हुए हैं अशोक के पेड़ दिख रहे है।